और सामने एक शटर के पीछे लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

और सामने एक ऑरेंज कलर का स्टूल भी हमें दिखाई दे रहा है।

और एक सफेद कलर का भी फूल है सामने एक पीले कलर में लड़का बैठा दिखाई दे रहा है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें एक आदमी पैसे गिनता हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसके पास में एक छोटा सा भी मंदिर भी बना हुआ है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक तस्वीर भी हमें दिखाई दे रही है।

और हमें एक ऊपर रेड कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और एक बोर्ड पे व्यापार भवन भी लिखा दिखाई दे रहा है।

और उस पे कुछ बोतल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और उस पे एस एन शर्मा पी_सी_एस भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक ईंट की दीवार भी दिखाई दे रही है।

और सामने एक बहुत ही बड़ा हमें लोहे का खंभा दिखाई दे रहा है जिसपे बिजली के तार जा रहे हैं।